और कोई भी व्यक्ति या बच्चा नहीं दिखाई दे रहा पार्क में पीछे पेड़ लगे हुए हैं।

कैप डाले हुए हैं ताकि कोई इंफेक्शन ना हो सके।

कुछ जानकारी ले रहे हैं रिसेप्शन पर और ऊपर पंखे लगे हुए हैं लाइट जल रही है और साफ सुथरा दिखाई दे रहा है।

दो औरतें पैदल चल रही हैं एक व्यक्ति साइकल पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है और एक साइड में एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर जा रहा है।

पीछे चर्च का मुख्य द्वार दिखाई दे रहा है।

जल रहा है और साथ में एक पर्दा है जो बंद है।

इस पे दो तलवारे क्रॉस करके लगाई गई है।

कुछ मजदूर मशीन चला रहे हैं और कुछ मजदूर--

कार की गाड़ियों का काम होता है कुछ कारे बाहर खड़ी है और बोर्ड लगे हुए है पी_एन_आर ऑटोमोबाइल कार वर्ल्ड --